यहां पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसकी काले कलर की शर्ट है उसके पीछे दीवार दिखाई दे रही है जो की ग्रे कलर में है पंख लगा हुआ है ।

यहां पर एक आदमी है जो की बैठा हुआ है उसने एक कैप लगा रखी है उसने चश्मा लगा रखा है सामने नदी बह रही हैसामने से पुल जा रहा है पुल के ऊपर भी कुछ बना हुआ है नदी बहुत गहरी है ।

वह बैठा हुआ है वह चप्पल पहने हुए है औरत ने सवा सूट पहन रखा है उसने चप्पल पहन रखी है वह कुछ कर रही है एक पर्दा लगा हुआ है।

यहां पर एक हरे कलर का पीछे एक दीवार है जिस पर लाल कलर से आकृति बनी हुई है ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है जो की नहीं जल रहा है एक लाइट लगी हुई है नीचे--

एक बच्चा भी खेल रहा है एक औरत खड़ी है एक बच्चा है जिसके हाथ में ट्यूब है बहुत सारा पानी है जिसके नीचे पीला और हरा रंग दिखाई दे रहा है ।

वुडन का फर्नीचर है जिसमें बहुत सारा सामान रखा है और उसमें बहुत सारी रेक है जो की उसमे समान दिखाई--

कपड़े पहन रखे हैं वह मंच पर प्रस्तुति दे रही है और पीछे सुंदर --